इस फोटो में हमें दो ट्रैक्टर खड़े हुए नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर लाल रंग का पेंट नजर आ रहा है।

है यह सब अपने-अपने रंग बिरंगे मैट के उपर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

यह फोटो किसी जन सेवा केंद्र की शॉप से लिया हुआ लगता है।

ऐ सामने की ओर कुछ प्रिंट मशीन भी रखी हुई नजर आ रही है।

है उसने नीले रंग के कपड़े पहने हैं साइड में ही एक व्यक्ति ने येलो कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है।

ऐसा लगता है यह फोटो किसी शॉप से लिया हुआ है।

रैक का कलर सिल्वर है सामने की ओर शहद के डब्बे भी रखे हुए नजर आ रहे हैं।

ऊपर काफी सुन्दर लाइटिंग्स भी है और साइड में एक फैन और एक कैमरा भी नजर आ रहा है।

एक डस्टबिन भी रखी हुई नजर आ रही है जिसके ऊपर भी गोवर्धन टूरिस्ट ढाबा लिखा हुआ है।

सामने हमें एक गैलरी नजर आ रही है पा --

दीवारों पर सफेद रंग का पेंट हुआ हुआ नजर आ रहा है।

सामने की ओर हमे एक रिक्शा भी रेलती हुई नजर आ र--

उसके पास एक और व्यक्ति नजर आ रहा है जो कि बाइक के ऊपर बैठा है।

पीछे की ओर क्रिसमस ट्री भी रखा हुआ नजर आ रहा है।

इस फोटो में दो गेट नजर आ रहे हैं जिसका रंग नीला है।

ऐसा लगता है कि कोई भीड़ भड़ाक का इलाका है पास की में कुछ पेड़ भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

अंदर की ओर काफी सारे चश्मे भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इसमें काफी सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनके फेस को ब्लर किया गया है।

जिसने ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पेहनी हुई है।

फोटो किसी सड़क से लिया हुआ लगता है।

इस फोटो में ऐसा लगता है कि यह तीनों कार किसी रिपेयरिंग शॉप के बाहर खड़ी हुई है।

ऐसा लगता है यह फोटो किसी मार्केट से लिया गया है।

ऊपर की ओर एक टेंट भी लगा हुआ है जिसका रंग संत्री है।

पीछे की और भी एक सोफा रखा हुआ नजर आ रहा--

उसके सामने हमें ए दो शीशे भी नजर आ रहे हैं।